यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के नीचे एक गेट लगाया हुआ है जो की लोहे का गेट है।

यहां पर गायों के लिए गौशाला बना हुआ है ऊपर लोहे की चद्दरे लगे हुए पीछे साइड में बहोत सारे घर बने हुए हैं।

गौशालों के अंदर पत्थरों के छोटे छोटे खंबे लगे हुए और जमीन--